पेड़ है एक आदमी बेठा है गैल में हेड फ़ोन है कलि शर्ट पहना--

बड़े पत्थर है पत्थर पर लोग बेठे है पहाड़ है गुफा